बाहर दीवार पर एक ए_सी भी लगी हुई है।

पानी का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे कंकड़ भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर में पटरे लगे हुए हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड का दृश्य है ग्राउंड में बहुत सारी लड़कियां हैं।

यह एक मकान का दृश्य है मकान के ऊपर में करकट लगा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे व्यक्ति बिना कपड़ों के हैं जो बॉक्सिंग करने वाले--

के पीछे एक बड़ी सी पेड़ है और एक मकान दिखाई दे रहा है।